यहा पे एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ लोग तैरते हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे रोड दिखाई दे रहा है कुछ बाइके भी दिखाई दे रही है यहाँ पे कार दिखाई दे रही है ओर रिक्शा भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसके दीवाल का कलर व्हाइट और पिंक हैं यहाँ पे फूलों की मालाएं भी दिखाई दे रही हैं।

और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे है यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज की मशीने भी दिखाई दे रही है पर्दा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका कलर रैड है।

टेबल भी दिखाई दे रही है और कुछ मकान भी दिखाई दे रही है उनके दीवार का कलर व्हाइट और खिड़किया भी दिखाई दे रही हैं ऊपर आसमान भी दिखाई--